ये जो पिक्चर है ये एक ऑफिस का है।

में एक बुढ़ी अम्मा दिखाई दे रहे हैं।

में एक बैठने का भी जगह है जहां में बस तीन आदमी ही बैठ सकता है।

जो पिच्चर है ओ एक शाम मे लिया गया का है जिसमे वहां में बहोत सारा छोटा छोटा घर सब दिखाई दे रहा है।

की हमें बहुत लंबा सा एक ठो ब्रिज दिखाई दे रहा है।

बहुत सा आदमी लोग हमें आदमी लोग किनने के लिए आया हुआ दिखाई दे रहा है।

कि यह मशीन का कलर मशीन जो है ऊपर लोहा से बनाया हुआ दिखाए।

उसका आगे मे एक कंप्यूटर और एक कीबोर्ड माउस उसका बहुत सारा बुक्स उसके बाद हमें एक चाबी भी दिखाई दे रा है।

ये बहुत सारा अलग अलग किस्म का बुक्स सब दिखाई दे रहा है।

में बहुत सारा अह ग्रीनरी दिखाई दे रहा है क्योंकि पीछे बहुत सारा गच्ची सब पहाड़ सब दिखाई दे रहा है।

यह जो पिक्चर है वो एक प्लेग्राउंड का दिखाई दे रहा--

जो पिक्चर है वो एक घर का लिया गया है।

जो की एक का कलर है ब्लू और एक का कलर थोड़ा ब्लैक है।

यहां मैं बहुत सारा आर्मी लोग का कपड़ा और शूज दिखाई दे रहा है।

अह टीना का कलर बहुत पूर्णा हो गया है और दूसरा का थोड़ा सा हाफ पूर्णा हुआ है।

यहां में बहुत सारा सामान सब दिखाई दे रहे है जो कि इसको रिपेयर कर रहा है।

उसका कलर रेड टाइप का दिखाई दे रहा है।

ये जो पिक्चर है वो एक नदी का लिया गया है छोटा सा।

यहां से आने के लिए भी रास्ता ऊपर से दिखाइ दे रहा है और बहुत सारा ग्रीन ग्रास सब दिखाई दे रहे है।

इसमें ऊपर में ब्लू ब्लू सा लाइट सब से लाइंस करके दिखाई दे रहा है।

ऊपर में बहुत सारा लाइट सब लगाया हुआ है।

कट साइड में हमें दो तीन सा कपरा सब दिखाई दे रहे।

जिसने वो एक व्हाईट कलर का ईयरफोन पहनके है।